सामने जय कर्सिल ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है सामने --

सामने एक कार खड़ी हुई है जिसका नाम कोविड सहायता लिखा हुआ है उसके पास सामने एक आयूनिक लिखा हुआ है।

उसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई नज़र आ रही है साथ ही लाइट रंग बेरंगी कलर की दिखाई दे रही है।

सामने एक बी सेट भी दिखाई दे रहा है दो तंबू खिचे हुए है जो की दोनों तरफ दे पैक है सफ़ेद और काले रंग के और बहुत सारे लांबे-लांबे पेड भी लगे है।